यहाँ पर किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर चार लोग हैं और --

शायद से कुछ बिल्डिंग बनाने का सोच रहे हैं यहाँ पे ईटे उंटे सब चीजे हैं और यहां पर रेखा भी खींची गई है इसके बारे में की यहाँ पर कैसा बनाया जाए।

और यहां पर पेड़ फूल भी लगाये --

बहुत ही जैसे कोर वो देखो कीड़े-मीड़े हैं मैगी है यहां पे धूप-धाप है बहुत ही सारी चीजे हैं।

अब पानी बहोत ही अच्‍छा है और इसे देख के मन बहोत ही अच्‍छा फील लग रहा है और उदर साईड गुफा है।

यहां पर वे बहुत ही अच्‍छे है पीछे यहां पर कुछ रहे बेच रहे हैं मटके-मुटके यहां पर भगवान की सारी चीजें और यहा पर शंकर भगवान है खड़े यहां पर--

तो पीछे मिट्टी-मुट्टी गिरी है और बहोत ही अच्‍छा लग रहा है यहाँ पे देख के इन भाई --

यहाँ पर पत्थर पत्थर है और इस पत्थर शायद ये कहीं बैठने का इलाका है यहाँ पर नजदीकी इलाका और इस पे कुछ लिखा गया है।

कुछ चीज कुछ रखे गए हैं यहां पर इंसान खरीदारी करने आ रहा है।

हरे-भरे नजारों में बहोत ही अच्‍छा दिखा रहा है घास-पूस है और बहोत ही अच्‍छा लगेगा शायद घर है।

एक होटल है जो बहुत ही अच्छा है होटल से बहुत ही अच्छा होटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार है साइड --